नीचे बहोत ही ज्यादा हरियाली है पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस अह इस रेस्टोरेंट में ऊपर बहुत ही ज्यादा लाइट्स लगी हुई हैं ऊपर बहुत ही ज्यादा जगमग है।

यह दृश्य बहोत ही ज्यादा सुन्दर दिखाया गया है।

निचे मिट्टी सारी जमी हुई है और गीली है।

इस दृश्य में ऊपर मौसम बहुत ही ज्यादा सुहावना हमें--

यह दृश्य भी देखने में बहोत ही ज्यादा आकर्षित और रोमांचित हमे नजर आ रहा है।

इस दृश्य में ऊपर इस दृश्य में ऊपर मौसम बहोत ही ज्यादा सुहाना हैं।

अ इमारत दिखाई दी गई है जोकि शायद कोई--

इस दृश्य में हमें ऊपर मौसम बहोत ही सुहावना नज़र आ रहा है।

इस दृश्य में इस दृश्य में हमें एक बहुत ही ज्यादा ऊंची इमारत--

अंदर और आकर्षित हमें दिखाई दे रहा है।

यह दृश्य भी देखने में बहोत ही आकर्षित नजर आ रहा हैं।

और इस दुकान में हमें कोई लोग नहीं दिखाई दे रहे--